हिस्से मे पोस्टर लगे हुए है और झंडा भी लगा हुआ है।

टेबल में चम्मच भी है।

दुकान के ऊपर ट्राइबल फुड लिखा हुआ है और ट्रीओस भी लिखा हुआ है और बाहर में ढेर सारे स्कूटी और बाइक भी रखा हुआ है।

से बनी खिड़की भी है।

वॉल के ऊपर टी_वी और और सी_सी_टी_वी कैमरा भी लगे हुए है नीचे में फ्लावर पॉट डस्टबिन भी रखा हुआ है बहुत सारे चेयर भी रखे हुए है।

बैग और जूते भी रखे हुए है।

बहुत सारे मनुष्य भी है।

मुझे इस तस्वीर में लाल रंग के चेयर ढेर सारे दिख रहा है।

शीशे में लाइट का रिफ्लेक्शन भी दिख रहा है।

इसमें काले और लाल रंग का चेयर रखा हुआ है।

इसे मैं एक चप्पल भी रखा हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में एक बड़ा सा गेट दिख रहा है।

ऊपर में किडजी लिखा हुआ है सफेद रंग का दीवार भी है।

मनुष्य भी दिख रहा है। बगल वाला दुकान में पानी का सिंटेक्स भी है।

दिवाल में भी लगाया हुआ है।

इसको कपड़े और गुब्बारे से सजाया हुआ है।

घर के बाहर में बहुत सारे मनुष्य भी है।

बेम्बु का सीरी भी बनाया हुआ है।

ज़मीन भी दिख रहा है। आसमान और पेड़ पौधा भी दिख रहा है।

बाहर में रेलिंग और सीढ़ी भी है एक मनुष्य भी खड़े हुए--

मुझे इस तस्वीर में लंबा सा पिरामिड दिख रहा है।

सोफा भी रखा हुआ है सोफा के बगल में फ्लावर पॉट रखा हुआ है सफेद रंग का।

मुझे इस तस्वीर में एक सर्वर दिख रहा है पीछे में आइडिया लिखा हुआ है।

दीवार में ए_सी लगाया हुआ है।

बहुत सारा शीशे का दारू बोतल रखे हुए हैं।

बहुत सारे सीसी के गिलास ऊपर और नीचे में रखे हुए हैं।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

ऊपर में मिसेस ए_जे ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक सेंटर लिखा है।

बाहर में ढ़ेर सारा बाइक और स्कूटी रखा हुआ है।

सोफा भी है सोफा के ऊपर तकिया भी रखे हुए हैं।

दीवार में ढेर सारे पोस्टर लगाए हुए हैं।

मुझे इस तस्वीर में काला रंग का बिस्तर दिख रहा है बिस्तर में सफेद रंग का कपड़ा बिछाया हुआ है।

सफेद रंग का दीवार है दीवार में घड़ी फूल और स्विच लगा हुआ है जो भी है।

कंस्ट्रक्शन साइट भी दिख रहा है उसके सामने ढेर सारे टिने भी रखे हुए है।

हॉल में पोस्टर भी लगाया हुआ है।

फेंसिंग भी लगा हुआ है दूर में बहुत सारे पेड़ भी दिख रहा है।

ढेर सारा खाने का सामान भी रखा हुआ है।

मुझे इस तस्वीर में एक बड़ा सा खुला टैरेश दिख रहा है।

पीछे में हरा रंग का थर्मल रखा हुआ है।

और बहुत सारे मनुष्य भी खड़े हुए हैं।

मुझे इस तस्वीर में एक बड़ा सा सफेद रंग का घर दिख रहा है।

बिल्डिंग के बाहर मैं ढेर सारा कचरा और ईटा भी है बैम्बू भी रखा हुआ है।

हर रंग का टेबल और चेयर भी है।

मैदान में बहुत सारे बस रखा हुआ है।

उसमे पोस्टर लगाया हुआ है । पोस्टर में लॉन्ड्री लैब लिखा हुआ है।

घर के ऊपर बक्सा भी रखा हुआ है बाल में फैन और रेडबल्ब भी लगाया हुआ है।

ढ़ेर सारा ट्यूब लाइट दिख रहा है। सफेद रंग का वाल भी है।